इस सर्विस सेंटर का नाम है गोरवी सर्विस सेंटर --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

एक अंकल फोन पर बात करते हुए नज़र आ रहे है।

इसमें दो प्रकार की चम्मच है एक नॉर्मल चम्मच तथा एक कांटे वाली चम्मच।

जो ढाबे की रौनक बढ़ा रही है बाहर--

इस कमरे में पास में एक स्टील का डस्टबिन नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक बैंक है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक ।

इस फुव्वारे पे लाइटनिंग का बहोत ही सुंदर इफेक्ट दिखाई दे रहा है।